और इसका जो टेबल है वो कांच का है सामने हमें ड्रेसिंग गोदरेज और भी--

यह एक गाड़ियों का सर्विसिंग सेंटर है जोकी बहोत ही बड़ा है।

यह एक शॉप है प्रतीत होता है यह एक फिलौनो का शॉप है जहां पे --

बैठाई गई हैं अगल बगल खिड़कियां एक दरवाजा खुला हुआ है जहां पे अंदर जाने का रास्ता है।

ये हमें गांव की एक पतली सी सरक नजर आ रही है बारिश के कारण यहां पे साइड में पानी जम गया है।

और सामने एक आलीशान सा बंगला नजर आ रहा है जिसकी द्वार काफी बड़ी है।

बनाया जा रहा है छत उम् छत को--

बहोत सारे घर अगल बगल छड़े भी निकली हुई दिख रहीं हैं।